यहाँ रखा हुआ काउंटर दिखाई दे रहा है और यहाँ बाइक्स खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

दो लड़कियां दिखाई दे रही हैं जिनके हाथ में केन्डलस हैं और गुरूजी दिखाई दे रहे हैं पीले कलर --